और एक पर्दा भी लगाया हुआ--

कुछ पेड़ लगे हुए है जोकि--

यहां एक लोहे का गेट है।

और यहां पर कुछ लोग--

यहां पर एक शादी हो रहीं हैं और यहां--